ये ये किसी होटल का काउंटर हैं जिसपे --

ये छत हमें बहुत ही चीज़ों ने मदत भी करेगा।

दरगाह एंड मस्जिद हज़रात मूशा मदरसा ऐरबिया सिराजुल और भी कुछ लिखा हुआ है जहाँ पर स्कूटर भी लगा हुआ है और आदमी भी --

इसमें चिकन की चार लेग हैं और बीच में शायद कोई कड़ी हैं।

चंद्रा वस्त्रालय और यहाँ पे बहोत सारे मोटर साइकिल आर बाईसाइकिल भी लगे हुए हैं यहाँ पे।

और धुंद भी बहुत लगा हैं और पहाड़ भी दिख रहा हैं जिसपे जिसपे छोटे - छोटे पेड़- पोधे सब हैं।

और ये जो हैं न ये नर्सरी से एइथ क्लास तक हैं और ये इंग्लिश मिडियम स्कूल है।